जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जिसमें एक बहुत बड़े ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें कुछ बाइक्‍स --

प्लास्टिक भी मुझे दिखाई दे रहा है आसमान पे सूरज ढल रहा है दिखने में ये--

नीचे एक नदी है और इसके बाएं तरफ एक स्टेज है जिसमे तीन छोटे टेबल भी हैं कुछ सीढ़िया भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ--

जैसे कि मुझें यहां पे दिखाई दे रहा है रास्ते के ऊपर एक आदमी फ़ूड का पोस्टर को लेके खड़े हुए है इसके सामने एक लोहा का बैरीकेड है पीछे एक--

जैसे की मैं देख पा रही हूं ये एक बिल्डिंग का छाद है जिसके ऊपर कुछ चेयर रखा हुआ है टेबल भी है जिसके ऊपर--

छत भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर वॉटर टैंक है टैंक इलेक्ट्रिकल पोस्ट भी मुझे दिख रहा है ।

इधर लाइटस भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कैमरास भी है दुकान के अंदर एक पिंक कलर का टेबल भी है इसके ऊपर कुछ पेपर रखे हुए हैं दुकान--

इसके बाएं तरफ एक छोटा बिल्डिंग है जिसमें एक खिड़कियां भी है ट्रांसफार्मर मिटर के पीछे समंदर भी है में देख पा रही हूँ--

और दिखने में यह दिन का समय लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

मिरर पे मैं देख पा रही हूं दीवाल का शोकेस है जिसमें से बहुत सारे चीज रखे हुए हैं कुछ आदमी--

और पेपर पे बहोत सारे डिजाइन करके कुछ कटिंग किया हुआ है जिसमें कलर भी किया हुआ है रेड कलर --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक दुकान है दुकान के अंदर शोकेस है इसमें प्लास्टिक का कंटेनर है --

ब्‍लू कलर से कुछ लिखा हुआ है दुकान अभी कांचो के दरवाजे से बंद है जो ब्‍लू कलर का बॉर्डर भी है।

और रस्ते के दोनों पास में हरे रंग का घास भी मैं देख पा रही हूँ रस--

बिल्डिंग के नीचे एक ग्रोसरी का दुकान भी मैं देख पा रही हूं इसके सामने कुछ सीढि़यां हैं और बस्‍ता खरा हुआ है।

मे लाइट और इलेक्ट्रिक तार भी मुझे दिखाई दे रहा है देखने में ये दिन का समय लग रहा है बहोत ही सुंदर लग रहा है।

रेक के नीचे ऑरेन्‍ज कलर का ड्रायर भी मैं देख पा रही हूं एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ फाइल और पेपर भी मैं देख पा --

दाईं तरफ कुछ प्लास्टिक का मेट है एक स्टैन्ड फैन टेबल है उसके सामने ग्रीन कलर का एक टेबल है जिसके ऊपर --

एक बिल्डिंग में देख पा रही हूँ आसपास पेड़ पौधे हैं दिखने में ये दिन का समय लग रहा हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक हॉल रूम है इसके अंदर शोकेस पर माइक्रोवेव से लेकर किचन --

और एक रैलिंग के साथ सीढि़यां भी मुझे दिखाई दे रहा है एक ब्राउन कलर का पीलर है जिसके साथ रेड कलर का छत भी है ।

सामने फूलों का टब है जो येलो और ऑरेंज कलर का फूल यहां पे हुआ है।

सामेन एक मैडिल भी मैं देख पा रही हूँ एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन भी है सिम--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक फ्रूट का स्टॉल है जिसमें कुछ रैक में देख पा रही हूं बहोत सारे फ्रूट्स भी यहां पे है।

ए_टी_एम मुझे दिखाई दे रहा है दिखने में यह दिन का समय लग रहा है और बहोत ही सुंदर लग रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहां पे एक रस्ता है इसके सामने ब्लु कलर का एक छोटा बिल्डिंग है जिसमे एक दरवाजा और दो छोटे खिड़कियां मैं देख पा रही हूँ।

पेड़-पौधे है दाएं तरफ ये इलेक्ट्रिक लाइट पोस्ट है जिसपे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइट हैं।